किनारे दिवाल में पेड़ लगे दिख रहें हैं।

दुकान के नीचे काली कलर का ग्लास दिख रहा है।

यहां दुकान के सामने रोड में बाजार लगी हुईं हैं।

बाजार में ऊपर छांव के लिए त्रिपाल लगी दिख रही है।

आदमी बनियाइन और लोवर पेहने हुए खड़ा है।

दुकान के बाहर एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लगी हुईं हैं।

ब्यूटी पार्लर के ऊपर तार दिख रहा है।

बाहर ग्लास का मिरर भी दिख रहा है।

माइलोमीटर में ऊपर सफेद कलर दिख रहा है।

किनारे इस तरफ हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

किनारे एक रेफ्रिजरेटर भी रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी बहुत सारी दवाइयां रखी हुई हैं।

साइड में कुर्सी रखी हुई है। एक के अंदर एक दो कुर्सी दिख रही है।

इस पिक्चर में हम क्लिनिक को देख रहे हैं बोर्ड में क्लिनिक लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में हम एक हॉल को देख रहे हैं।

ऊपर भी बैलून लटक रहे है बैलून के सामने ए_सी का चैंबर भी दिख रहा है।

लड़का सफेद शर्ट और जींस पहेने हुआ है।

किनारे साइड मोर की आकृति बनी हुई है।

यहां पर एक लाल कलर की कार खड़ी हुई है।

आदमियों के द्वारा पेट्रोल भरा जा रहा है।

औरत पिंक कलर का कपड़ा पहनी हुई है।

गाड़ियों में शीशे लगे हुए हैं मेन डोर भी कांच का दिख रहा है।

वह कुछ हांथ से कंप्यूटर में कर रहा है।

प्रिंटिंग प्रेस की मशीन भी दिख रही है।

किनारे साइड टाइल्स भी लगी दिख रही है।